रास्ता है गली है एक। रात का समय हो रहा है घर है उसके बाहर कट्टे रखे हुए हैं। एक खम्भा है उसपे लाइट लगी हुई है। वहाँ एक |